और अलग अलग मल्टी कलर में--

तो बीच में रेलवे ट्रैक नज़र आ रही है।

यहां पे बहोत सारी बाइक दिखाई दे रही है।

जिसमें एक ऑटो रिक्शा के पास दो आदमी खड़े रहते कुछ काम कर रहे हैं।

यहां पे बच्चे स्क्रीन देखने के लिए नीचे जमीन पे बैठे हुए हैं।